यह एक किला टाइप का दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक दो लोग दिखाई दे रहे--

यहाँ से छतीसगढ़ गतिशील ब्राह्मण समाज तीजा तिहार दिखा लिखा दिखाई दे रहा है।

येक टेंट लगा हुआ है फूल भी लगे हुए नीचे फर्श बिछा हुआ है थैला भी रखा हुआ है।

यहाँ लाल पर्दे भी दिखाई दे रहे है पर्दे अच्छी डिजाइन मे बनी है ये टेंट से टाइप का दिखाई दे रहा है नीचे अच्छी नेटी बिछी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे मकान भी नजर आ रहा है टेंट के नीचे कुर्सी भी नजर आ रही और बिजली वाले खंबे भी दिख रहे पेड़ भी दिख रहे ।

जिसे अच्छे व्यवस्थित रूप से बनाया गया एक वहाँ रास्ता भी गई है।

और छोटे-छोटे पानी के कंकर भी दिखाई दे रहे है और छोटे से धुआ नजर आ रहे ।